गाड़ियों के सामने बहोत बड़ा मकान नजर आ रहा है।

इस दृश्य में मुझे बहोत सारे छोटे छोटे--

एक बहोत बड़ा रेत का ढेर दिखाई दे रहा है।

जिसमें बहोत सारे बिस्किट के डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

फूल भी नजर आ रहे है।

सड़क सी नजर आ रही है।

एक बहोत बड़ा मकान दिखाई दे रहा है।

दो रेल की पटरियां दिखाई दे रही है।

एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें--